बस के सीढ़ी पर साफ़ सफाई कर रहे हैं |

छह के.जी. दस के.जी. पन्द्रह के.जी. --

यहाँ पर टेंट लगाया गया है और टेंट के सामने तीन व्यक्ति पोज़ दे रहे हैं जो ब्लैक कलर की --

और यहाँ सर के ऊपर एक टोपी पहना हुआ है |